दीवारों पर कुछ रिंग्स बने हुए हैं।

इसके बीच में बहुत सारा सामान है।

फूल और पत्ते बेच रहे हैं।

जहां कुछ नमकीन के पैकेट पड़े हैं।

यह दोनों व्यक्ति काम कर रहे हैं।

यह मूर्तियां एलीफेंट की है।

इस पार्क में झूले भी है।

इन चेयर्स का कलर अलग अलग है।

यह पेड़ बहोत ही पतले हैं।